साइड की बोतल जो पेप्सी की बोतल इस ब्राइट के - और थे फंट के बोतल रखी गई ऊपर छोटे बच्चे खाने रखे गए हैं और कैसे रखी गई है मैगी के पैकेट टंगी हुई है।

सफे-ए ब्लू रंग की आसमानी है एक औरत जा रही है जो सफेद रंग के कपड़े पहनी हुई है ताप रखा हुआ है जिसपे गिट्टी भरी हुई है।

फूल बना हुआ है जो ब्लू रंग की है एक या सामान्य है सफेद नीला आसमान ने पेड़ पौधे हरी पत्तियां हैं।

एक पुल बना हुआ है जो काफी लंबी है और पोस्टर लगाए जा रहे हैं जो सफेद रंग के काले रंग के हैं पास लगी हुई है।

जो मेकअप के सभी औरतों ने सफेद रंग के कपड़े पहने हैं लड़के ने कच्चे रंग के कपड़े पहने नीचे साइड पर टाइल्स से जो करती है।

एक ए काले रंग का ए गाड़ी खाड़ा हुआ है पेड़ पौधे हरी पत्ती है बोर रंग के घर है सामने एक गाड़ी खड़ी जिसकी कांच दिख रही है नीचे साइड किया गया है।